पुल के आस पास पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

सीढ़ियों पर सुंदर लाल कारपेट बिछा है।

यह एक सुंदर और साफ घर दिखाई दे रहा है।

यहां एक सफेद रंग की मस्जिद है।

सभी बच्चों ने टोपी पहन रखी है।

घर के सामने बहुत सारे पौधे हैं।

एक छोटा सा टिन का घर है।

पास में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

छत पर गुलाबी पर्दे लटक रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां है।

यह एक खुला हरा मैदान है।

कमरे में कंप्यूटर और पंखा लगा है।

पेड़ों की एक सुंदर लाइन है।

चारों तरफ हरियाली और पेड़ हैं।

यह एक वाटर पार्क का दृश्य है।

यह एक शांत झील का दृश्य है।

मंदिर के पास हरियाली बहुत सुंदर है।

पेड़ के शाखाये मन्दिर पर झूकी है।